कुछ वाइट कलर का तार दिखाई दे रहे है | पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पत्थर दिखाई दे रहे हैं काले कलर --

नदी दिखाई दे रहे है जिस नदी में बोहत सारा पानी भरा हुआ है रंग-बिरंगे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

तार वाला गेट लगा हुआ है | साइड से बाउंड्री हो रही है | क्रीम कलर और ऑरेंज कलर पुता हुआ है | बादल दिखाई दे रहे है ब्लैक ।

आसमानी कलर पुता हुआ है बादल दिखाई दे रहे है | ब्लैक वाइट कलर के कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं | दुकान बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे --